इधर से एक पंडित जी गुजर रहे हैं यहां पर बहुत सारे गरी गड़ी खड़ी है।

यह ट्रक में टंकी लगी हुई है यह पेट्रोल अ इस टंकी में जाती है और पेट्रोल पंप में जा के टंकी में दी जाती है ।

यह एक बहुत बड़ा होटल है यह होटल में बहुत सारे लोग रहने के लिए आते हैं यह होटल को लोग बुक करते हैं फंक्शन के लिए पार्टी के लिए विवाह के लिए बहुत सारे --

यहां पे यह लड़का लेटा हुआ है और डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं।